पीछे में बहुत सारा खिड़की भी नजर आ रहा है।

दुकान का सामने में बहुत सारा इंसान लोग नजर आ रहा है।

और उसका आगे में बहुत सारा घास लोग नजर आ रहा है।

बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

वेन्तिलेतोर्स लोग भी नजर आ रहा है।

और उस तरफ भी बहुत सारा एक लाइट दिख रहा है।

जिसके अंदर में बहुत सारा टेबल्स और चेयर रखा हुआ है।

और पीछे एक पहाड़ जैसा भी नजर आ रहा है।

और एक लड़का भी दिखाई दे रहा है।

और हर काउंटर में एक फैन भी नजर आ रहा है।

लाइट भी दिखाई दे रहा है।